यहाँ पे रोड दिख रहा है।

यहां पे एक और बगल में उसके दुकान दिख रहा है।

यहां पे कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोग पढ़ा रहे होंगे।

यहां पे एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन दिख रहा है।

इसके चारों तरफ जंगल जंगल लग रहा--

दुकान के बगल में भी एक दुकान है इसके ऊपर गणेश भगवान का फोटो चिपकाया हुआ है।

यहां पे दो बैडमिंटन कोट दिख रहे हैं और ग्रीन कलर का शेड भी लगा हुआ है।

कई सारे गाड़ियां लगा हुआ भी दिख रहा है।

गाड़ी भी खड़ी है आगे।

यह एक कार सर्विस सेंटर है।

यहां पे कई सारे लोग एक साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं।

दोनों अपने अपने काम में व्यस्त है।

पैलेस के बाहर एक बड़ा सा लाइटिंग भी लगी हुई है।

यहां पे एक बेसिन भी लगा हुआ है।

यहां पेड़ पौधे भी बहोत सारे हैं।

यहां पे पौधे भी दिख रहे हैं।

यहां पे दुकाने दिख रहे है शायद दुकान टायर का है।

यहां पे कई सारे लोग दिख रहें शायद यहां पे लोग कुछ मछलियां किनने आए होंगे और इसमें से कुछ बेचने वाले भी हैं।

जहां पे वूमेन का ज्यादातर कपड़े दिख रहे हैं।

यहां पे लोग कपड़े खरीदने आते होंगे।

एक लोग बैठे हुए हैं जो की कुछ कर रहे हैं।

यहां पे एक ब्रिज दिख रहा है जिसके नीचे बहुत बड़ा नदी लग रहा है।

यहां से कई सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

यहां पे कई सारे लोग दिख रहे हैं।

यहां पे कई सारे चेयर भी लगी हुई है।

टेबल पे टिशु भी रखा हुआ है।